ठीक सामने एक लड़का और लड़की का चित्र रखा हुआ है।

इसमें दो पेड़ के मटके दिख रहे हैं और सामने घर दिख रहा है।